ये कोई एरपोर्ट का चित्र है।

फोम का जो फर्स है वो ब्राउन कलर का है इसमें एक जाली लगा हुआ है।